एक छोटी पाइप लाइन दिखाई दे रही है यहां पर घर बना हुआ है जो दिखाई दे रहा है।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

यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे में कुछ घड़ी रखे हुई हैं एक मूर्ति रखी हुई है जो दिखाई दे रही है एक कां कांच दिखाई दे रहा है जो लगा हुआ है।